सामने के एक साइड दीवाल का रंग सफ़ेद है अगल बगल पेड़ पौधे जो हरे रंग की पत्तिया है|

और पेड़ लगे हुए है शो पीस--

हरे रंग की है बगल मे एक और मूर्ति बनी हुई है |अंदर की साइड मे जो मूर्ति बनी हुई है | पत्थर की बनाई गई है और जो पत्थर की ऊपर रखी गई है ।